दोनों गाड़ी में एक एक हेलमेट रखे हुए हैं।

और एक स्कूटी है जिसमें पोस्टर लगाया हुआ है।

दीवाल में बाइक का पोस्टर चिपकाया हुआ है।

यह एक दुकान है जिसका अंदर में फ्रिज कूलर रखे हुए हैं।

यह एक कॉलेज लग रहा है जिसमें बहुत सारे लड़कियां है जो बैग सब लोग रखे है।

साइड में एक दुकान है जिसमें दो भइये नजर आ रहे हैं।

यह एक मेन रोड है साइड में एक पेप्सी दुकान दिख रहा है।

एक बाइक दिख रहा है ब्लैक कलर का इसका नंबर पंद्रह उनासी दिख रहा है।

उसका साइड में एक वर माला का सोफा बैठने वाला है।

एक आदमी देख रहा है दिख रहा है।

और एक पाइप का एलिवेस्टर घर दिख रहा--

स्कॉर्पियो का रंग व्हाइट कलर का है आदमी ने टोपी पहने हैं व्हाइट कलर का।

यह एक ऑफिस है जिसका अंदर में एक चेयर दिख रहे है।

एक दो लेडीज दुकान में बैठे हुए मछली बना रहे हैं।

इसमें केला संतरा अंगूर बेदाना--

यह एक दो तल्ला घर है जिसके बाहर में दो पुलिस दिख रहे है।

यह एक खुला प्लेस है।

दीवार में तीन चार पंखे दिख रहे हैं।

दीवार में बहुत सारे तरह तरह कलर के बैलून लगाए हुए हैं।

उसका साइड में एक और अंकल बैठे हुए हैं।